यह एक पार्क है और यहाँ पे बहुत सारे लोग --

और यहाँ पे रखे हुए हैं रेडमी रखे हुए हैं रियलमी हैं और विवो भी हैं और जैसे फ़ोन बोहोत ही अच्छे कंपनी --

यह एक मस्जिद है और यह मस्ज़िद --

यहाँ पे एक बुक स्टोर है।

और बस के उधर एक घर है वहाँ पे बैनर में लिखा हुआ है ओयो --

और यहाँ पे इधर दो चार आदमी खड़े हैं।

यहाँ पे दो-तीन रिक्शा हैं और ये सभी रिक्शा नये हैं और अभी --